एक कार्यालय है जिसका नाम है संभागीय कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यम शिक्षा मंडल रज नंदनगाँव यहाँ बहुत सारे पेड्स दिख रहे हैं।